पांच-पांच किलो की कट्टी रखी हुई हैं। उन कट्टियों में कुछ केमिकल भरा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये किसी ट्रांसफार्मर का नजारा है उप--

सारे बादल भी दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

बट इसमें आप समझ लिजिए कि पीछे भी टिंनें लगी हुई हैं।

और मैं देख पा रहा हूं कि ये घर अभी का बना हुआ ही मुझे नजर आ रहा है।

ग्राहक वहां पे अपना इलाज कराने के लिए आए हुए--

जहाँ पे बहोत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और वहाँ पर एक--

मुझे तो कोई आदमी यहां पर खाना खाते हुए तो नहीं दिख रहा है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूं की ये हैप्पी न्यू ईयर का अ--

टेरस दिखाई दे रहा है और वहां पर कुछ कुर्सी भी रखी हुई है।

देखने में एक सामने गेट भी दिखाई दे रहा है।

दो लोग वहां पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसा की मैं देख सकता हूं।

हेलो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं रीना जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?